नीले रंग के कपडे पहने हुए है कुछ लडकिया दिख रही है और यहाँ पर काफी सारे रगोली बनी हुई दिख रही है एक कटोरी मे रानी कलर की रगोली है एक कटोरी मे स पीले रंग की--

वो दो लोग जो हैं एक हैडफ़ोन लगाया हुआ है और ये काफी सारे यहाँ पे बलून लगे हुए हैं और पंखे लगे हुए हैं।

और कुछ पेड़ दिख रहे है। काफी चट्टानें दिख रही है और पानी के अंदर परछाइयां दिख रही है।

एक मंदिर है मंदिर के सामने एक पेड़ है जो की काफी ऊँचा है उसमें हरे कलर के पत्ते लगे हुए हैं।

आस-पास काफी सारे बोट है और एक दरवाजा है जो की सफेद रंग का है एक मंदिर के अंदर काफी सारे लोग खड़े हुए दिख रहे है और लाइटें लगी हुई हैं।

एक सामने दरवाजा है जो की काले रंग में है और कुछ लोग बाहर खड़े हैं कुछ लोग अं --

ये टेबल पे बहुत सारे पन्नी वाली फाइले रखे हुए है जो की सफेद रंग में है और उसकी रस्सियां बंधी हुई है व कुछ रंग बिरंगी फाइले रखी हुई है जो पीले हरे लाल रंग में है।